एक लड़की दिखाई दे रही है जो एक इलेक्ट्रिक सामान से कुछ करते हुए दिखाई दे रही है। उसके हाथ के नीचे कुछ पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां ये नया ऑटो दिखाई दे रहा है| उसके पीछे एक रैपर में भी ऑटो बना हुआ दिखाई दे रहा है| ये ब्लैक एण्ड ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है| वो ब्लैक एण्ड रेड कलर दिखाई दे रहा है।

यह मुझे रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा जहां पर माल गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है और यहां पर अलग-अलग कोच लिखे हुए दिखाई दे रहे --

मुझे ये एक हिरण का बच्चा दिखाई दे रहा है जो अ अपनी पोज में खड़ा हुआ खेत में दिखाई दे रहा है।

और ये ब्राउन कलर और ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है और उसमें मिट्टी में पूरे पैर उसके ऐं गपे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और ये नदी के किनारे कुछ बड़े-बड़े से अशोका के झाड दिखाई दे रहे। पानी का कलर पूरा वाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

और ये पानी पत्थरों से ए बहता हुआ नीचे जा --

यह एक मुझे एएए कंप्यूटर क्लास दिखाई दे रही है जहां पर यह बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है नीचे सारी दुकानें है।

और यहां बहोत सारी गाड़ियाँ खड़ी दिखाई दे रही हैं और पे सामने गैलरी में कपड़े सुखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक पेड़ है जो दिखाई दे रहा है जो बिल्डिंग में उसकी टाँगें जाती हुई दिखाई --

कुछ गोल टावर लगे दिखाई दे रहे हैं और कुछ लंबे दिखाई दे रहे है। उसके जस्ट नीचे कुछ लोहे अ का --

यहां मुझे टावर दिखाई दे रहा है। टावर बहोत अ लंबा सा दिखाई दे रहा है। उसके बाजु में एक अशोका का झाड दिखाई दे रहा है।

तो मुझे एक बिल्डिंग नजर आ रही है जो थर्ड फ्लोर की दिखाई दे रही है और यहां नीचे शायद मुझे दुकान दिख रही है।

ये मुझे जिम दिखाई दे रहा है जिम में यहाँ पर ट्रेड मशीन दिखाई दे रही है और यहाँ पर तीन-चार ट्रेड मशीन दिखाई दे रही है।

मुझे पार्क दिखाई दे रहा है जहां पर वाटर फाल अं वागेरा दिखाई दे रहा हैं स्लाइडिंग दिखाई दे रही है।

ये मुझे एक कॉफी शॉप जूस दिखाई दे रहा है जो फ्रीज़र में जूस ठंडा रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

येलो कलर के क्रीम कलर के और लाल कलर के दिखाई दे रहे हैं और यम फूलों की माला भी बोहोत अ बनी हुई दिखाई दे रही है।

कवर किया गया दिखाई दे रहा है। उसके बाहर साइड कुछ जंगल सा दिखाई दे रहा।

व्हाइट एंड न ब्लू कलर की दिखाई दे रहे हैं।

जहां पर ग्रीन घास दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ग्रे कलर का भी घास दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर एक पक्षी --

यहाँ मुझे नीचे ग्रे कलर का कुछ घांस अ और जमीन दिखाई दे रही है और यहाँ पर बिस से पचीस भुट्टे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

चेयर रखी हुई दिखाई दे रही है जो पैक एकदम न्यू दिखाई दे रही है।

यहां पानी की टंकी दिखाई दे रही है और संटिंग का सामन रखा हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पर छत पर ऊपर डलने --